यह दुकान है यह मछली बहुत सारी मछली रखी गई हैं यह दुकान बहुत बड़ी है इस दुकान में अनेक प्रकार की मछलियाँ रखी गई हैं इस दुकान में बहुत सारे दुकानदार हैं ।

यह टेबल है यह टेबल पर बहुत सारे प्लेट लगे हैं यह प्लेट में पुलाव की चावल रखी गई है।

इस पुलाव में किसमस काजू मुनक्का इसमें मेवे भी दिए जाते हैं छवाल चावल द्वारा बनते हैं यह यह स काफी स्वादिष्ट खाने में लगते हैं।

यह घर के बाहर एक ग्राउंड है इस ग्राउंड में बहुत सारे छोटे-छोटे गमले में पौधे लगे गए हैं यहाँ पर --

बुद्ध पूर्णिमा के मुहूर्त है यहाँ पर दोनों तरफ से --